और इस कमरे में एक छोटा सा गेट भी है।

और एक छोटा सा स्टूल रखा हु--

यह एक बहुत सुंदर सी दुकान दिखाई दे रही इसके अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

मुझे यहां पर कुछ आदमी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह देखने में खूबसूरत लग रहा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

के पीछे चार पेंटिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के सामने एक पेड़ है।

यहां बहुत सारे आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं।